यू नो इस जो हवाई के साथ ये जो ये लोग बाते करते हुए नजर आ रहे हैं आसपास कोई इन्सान नही हैं खली सुनसान है और ये जगह काफी दूर तक साई हुई है।

नज़र आ रहा है और से भी ज्यादा प्यारा चीज जो नज़र आ रहा है उसके हाथ मे छोटा सा वाइट कलर का फूल --